यह एक बिल्डिंग है बिल्डिंग उजले रंग में है बिल्डिंग के चारो तरफ खिड़कियाँ दिख रही हैं बिल्डिंग के बाहर --

कुछ बड़े-बड़े पत्थरों भी दिख रहे हैं |

तारे पेड़ बहुत ही लम्बे-लम्बे दिख रहे हैं |